यह आदमी कुछ लाइट का काम करता है और उसके सामने कम्प्यूटर रक्खा है तथा एक कूलर रक्खा है।

यह एक दुकान है। डीजल और पेट्रोल की है। यहाँ दो कुर्सिया काले कलर की रखी हुई हैं।

यहाँ पर शटल भी लगी हुई हैं और एक काँच का शीशा भी लगा हुआ है और दीवाल की रंग गुलाबी रंग का है।

यह चित्र पैलेस की सजावट का है और एक कुर्सी डली हुई है और गुलाबी फूलों से सजाया गया है और एक बच्चा वहाँ पर खड़ा दिख रहा है।

यह एक फैक्ट्री का चित्र है जहाँ पर कई माल भेजे जा रहे हैं।

यह एक पैलेस का चित्र है। यहाँ पर कई कुर्सीयाएँ डली हुई हैं।

हरे-भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और मैदान में घास भी लगी हुई है।